ये पिक्चर में मुझे एक खिरकी भी नजर आ रहा है।

हमको ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

एक ग्रीन कलर का टीना न घर नजर आ रहा है।

ये फोटो में मुझे एक औरत फोन बात करते हुए नजर आ रहा है।

एक बाइक मुझे दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में मुझे ड्राइंग एग्जिबिशन दिखाई दे रहा है।

यहां हमें वाइट पेपर में लाल कलर का पेंटिंग भी दिखाई दे रहा है।

केक में पाना सिंबुल रेड कलर का सजाया हुआ दिखाइए रहा है।

मुझे यहा में एक लड़की दिखाई दे रहा है मुझे यहां मे एक --

यहाँ एक सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई दे रहा है।

चेयर में एक इंसान बैठा हुआ है।

मुझे यहां में एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में हरा भरा--

दो बाइक दिखाई दे रहा है।

यहां में मुझे एक चेयर भी नजर आ रहा है।

यहां का दीवार को ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

मुझे यहां एक सफेद कलर का कार दिखाई दे रहा है।

हमको ये पिक्चर में एक स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है।

हमको ये पिक्चर में एक पार्लर दिखाई दे रहा है।